बहोत सारे साइकिल्स दिख रहे हैं और बच्चों के भी साइकिल्स दिख रहे हैं।

सामने एक येलो और ब्लैक कलर का टायर गिरा हुआ है।

साइड मे दो टेबल्स है बैठने के लिए बहोत सारे चेयर्स है।

और अपना बाल को बहोत स्टाइलिस्ट से कट किया है पीछे एक ग्राउंड दिख रहा है।

एक फोटो है उसमें स्टेशन दिख रहा है खाली सा है।

संबलपुर में है मोबाइल नंबर दिया गया है।

ये एक फोटो है जिसमें सुंदर सा सीनेरी दिख रहा है बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है।

एक कैफे दिख रहा है कैफे का नाम द लिटिल कैफ़े है।